कुछ खाने वाले प्रोडक्ट है| यहाँ पे बहुत सारे चीज अवेलेबल है| बहुत सारे सीसिया और छोटे - छोटे बोतल देखने को मिल रहे हैं और ये एगो बड़ा-सा सोप नजर आ रहा है हमको |

हमको यहाँ पे एक बहुत बड़ा टेबल नज़र आ रहा है और कुर्सी लगा हुआ--

लग रहा है यहाँ बहोत कुछ न कुछ मेला लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है| आदमी कुछ खरीद-बिक्री कर रहे हैं यहाँ पे|

--और वहाँ पर फोर व्हीलर देखने को मिल रहा है कार और छत पर तीन आदमी देखने को मिल रहा है वहाँ पर हमको अभी---

ये सीन जो है हमको गांव का नज़र आ रहा है| यहाँ पे जो घर बना हुआ है सब टीन का बना हुआ है और टट्टी जो है बम्बू का बनाया गया है।

और यहाँ पे एगो बड़ा-सा गाछ देखने को मिल रहा है और इसके साइड में जो है बहुत सारा गाछ है जो एक दम हरा -भरा है और ये लम्बा गाछ जो है नारियल का लग रहा है।